कुछ आदमी वुजूबना रहे हैं।

एक दुकान दिख रही है।

कुछ आदमी खड़े हुए हैं।

आसमान में बादल हैं।

एक बड़ा कांच लगा है।

एक बोर्ड दिख रहा है।

पेड़ों का रंग हरा है।

जीसको लाइटों से सजाया गया है।

जहां गरीब बच्चों को--

जिसने लाल शर्ट पहनी है।

जिनका रंग लाल और सफेद है।

इस चित्र में हमें एक धागा दिख रहा है।

जिनमें हमें लाल नीला--

एक हार्डवेयर कीदुकान दिख रही है।

पेड़ लगे हुए हैं आसमान में बादल दिख रहे हैं।

कुछ पेड़ बने हैं पेड़ों का रंग हरा है एक गाड़ी खड़ी है।

इस चित्र में हमें एक तालाबदिखाई दे रहा है।

सामने कपड़े जमे हैं।

इस चित्र में हमें एक जंगल दिख रहा है।

जो गेम खेल रहे हैं।

काफी सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।